इस फोटो में सामने कुछ महिला और कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जो कि कुछ पीले दिखाई दे रहे हैं और कुछ हल्के हल्के लाल दिखाई दे रहे हैं।

घर में लगे हुए दरवाजे दिखाई दे रहे है सामने एक पंडाल दिखाई दे रहा है।

पीछे की तरफ कुछ पेड़ दिख रहे हैं और एक मेज रखी हुई दिख रही है।

सामने एक साइकिल से आदमी जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने रेलिंग पर दो आदमी खड़े हुए हैं।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा जंगल दिखाई दे रहा है और बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर की तरफ कुछ लाइटें जली हुई है जिसमे कुछ पीले रंग की दिखाई दे रही हैं और कुछ सफेद रंग की है।

इस फोटो में सामने एक कार गैराज दिखाई दे रहा है जिसमें कार की सर्विस हो रही है।

सामने की तरफ तीन कार इश्स्टैंड के ऊपर खड़ी हुई है।

सामने एक कार ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है और एक लाल कलर की दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ एक बड़ा सा गोल गहरा दिखाई दे रहा है जो की थमो से बना हुआ है।

जोकि सीमेंट के थंब है पीछे की तरफ कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

इसके किनारे पर कुछ मोटरसाइकिल खड़ी हुई दिख रही है एक मोटरसाइकिल पर एक हेलमेट रखा हुआ है।

आगे एक बड़ा सा टीन का हाल दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ पल्ले लटके हुए हैं।

और सामने एक एल_सी_डी चली हुई दिख रही है।

नीचे की तरफ एक बड़ा सा टॉवर दिख रहा है।

सामने कुछ पकवान बन रहे हैं जिसमें कुछ पराते रखी हुई दिख रही हैं एक मकान के अंदर।

सामने एक कार खड़ी हुई है जिसके आगे एक कार और दिख रही है।

नीचे कुछ घास उगी हुई दिख रही है ग्राउंड में।

और उसकी छत पर एक बड़ा सा कटा और टैंक रखा हुआ है।

इन्होंने कुछ ने टोपा ओढ़ा हुआ है।

सामने एक पेड़ का तना दिखाई दे रहा है और कुछ घास दिखाई दे रही हैं।

इपर कुछ सिंगर सिंगिंग परफॉर्म कर रहे हैं।

सामने एक मकान दिख रहा है मकान पर कुछ गेट लगे हुए हैं।

सामने प्लेटफॉर्म पर तीन कुत्ते बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ रिक्शा खड़ी हुई हैं इनके ऊपर पत्तों का एक बंडल रखा हुआ है।

जिसमें एक छोटा सा ग्राउंड दिखाया गया है जिसमें कुछ इंटिया बिछी हुई दिखाई दे रही हैं।

मकान में कुछ दरवाजे दिख रहे हैं लगे हुए नीचे की तरफ कुछ गमले रखे हुए हैं।

इस फोटो में सामने तीन बाईके खड़ी हुई हैं।

नीचे की तरफ दो लड़की जाती हुई दिखाई दे रही हैं।

और एक बेल दिखाई दे रही है जो कि छत पर जा रही है।

इस फोटो में एक ग्राउंड दिख रहा है इसके चारों तरफ कुछ लाल रंग की बाउंड्री दिख रही है।

और एक वॉलीबॉल का मैदान दिख रहा है।

नीचे की तरफ एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे गुरु वशिष्ठ हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

इस पर मां भगवती जी स्वीट्स लिखा हुआ है।

इस फोटो में सामने एक रियलमी की दुकान दिखाई गई है जिसमें ऊपर बोर्ड लगा हुआ है पीले रंग का जिस पर रियलमी लिखा गया है।